खिड़की भी लगे हुए हैं जिसमे अम.. ब्लू कलर का साइड सिग्नल है जो कि राईट साइड जाने को बोलता है और रेड कलर का पता नही क्या है इतना सारा लाईट है जो मस्त दिख रहा है ।

बहोत बड़ा मैदान है जिसमे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है जमीन दिखाई दे रहा है बहोत सारे लोग-- आधे लोग साफ सफाई कर रहे हैं कुछ लोग साथ खाना खा रहे है।

और एक इंसान स्कूटर में भी है। तार खंबे सब यहाँ झाड़ियां भी है पेड़ भी है पोस्टर भी लगा हुआ है गाड़ी भी है।